इस तस्वीर में हम एक रास्ता देखने पा रहे हैं| यहाँ पर मछली की बिक्री हो रही है।

तस्वीर में हम एक छोटी-सी दुकान देख पा रहे हैं। इस दुकान पर चाय पीने के लिए मिलती है। यहाँ पर बहुत सी आस-पास में दुकानें मौजूद हैं।

यह बस बहुत से फूलों से सजाई गई है। यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस बस की खरीदारी की गई है एवं इस बस के सामने एक भद्र पुरुष खड़े हैं।

और हम एक स्थान को देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत से पुरुष बैठे हुए हैं। सभी पुरुष सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। यह स्थान बहुत ही बड़ा है।

यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की मरम्मत करने की सोच रहा है। यह बहुत ही उबर-खाबर यह असमतल स्थान है। इस स्थान को मरम्मत की बहुत ही जरूरत है।

तस्वीर में हम एक रास्ता देख पा रहे हैं। इस रास्ते के ऊपर एक पुल बना हुआ है। इस तरह के रास्ते हमारे घर के आस-पास ही देखने को मिलते हैं।

तस्वीर में हम बहुत से लोगों को एक स्थान पर देख पा रहे हैं| यह सभी व्यक्ति एक रंग के वस्त्र पहने हुए हैं।

इस तरह के फूल हमारे घर के आस-पास भी देखने को मिल जाते हैं एवम ऐसे रास्ते साफ-सुथरे होते हैं।

तस्वीर में हम एक बड़े से मैदान को देखने पा रहे हैं। यहाँ पर दो वाहन लगे हुए हैं। एवं यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर किसी कार्यक्रम की तैयारी चल रही है।